वह बगल में कुछ गमले वाली चित्र है कॉपी पेन पेन्सिल रखी हुई है स्केच रखी हुई है स्टील की चीजें दिख रही है।

इसमें नीचे भू भूरी फर्श दिख रही है कुछ लोग सफेद कपड़े पहने हुए हैं कुछ लोग लाल महल सफेद।

यहां पर बोहोत सारे कॉपी किताब रखे हुए है ऊपर लाइट लगी हुई होल्डर लगी हुई है ट्यूबलाइटस लगी है।

कुछ पीले कपड़े दिख रहे है रखी हुई है लाइटे कपड़े फैन दिख रहे हैं कुछ शेरवानी है कुछ ब्लेजर --

यहाँ पे यहाँ लड़के दो बैठे हुए है और ऊपर लाइट जल रही है पर्दा है नीचे हरी रंग की चटाई बिछी हुई है।

पीछे बोहोत बहु सारी किताबें रखी हुई हे टेबल पे कंप्युटर रखी है बोर्ड जिसमें वो कम्प्युटर की तार गई हुई है और उसमें लाइट जल रहें हैं। --

यहाँ पे बहुत सारी कार खड़ी हुई हैं जो की लाल रंग सफेद रंग सिल्वर रंग नीले रंग की हैं बहुत सारे लोग इधर-उधर जा रहे हैं ऊपर घर में एक आलम है पोस्टर लगा हुआ है।